सीडिया लगी हुई है नदी के दूसरी और मुझे पौधे दिखाई दे रहे हैपेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ घर दिखाई दे रहे --

इस इमेज में मुझे एक बोहोत बड़ा ग्राउड़ दिखाई दे रहा है ग्राउड़ पूरा खाली है ग्राउड़ --

बगल में मुझे एक छोटा घर टाइप दिखाई दे रहा है जो महरून रंग से रंगा है।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

हम्म बैंच राखी हुयी है जो ब्राउन कलर की है शॉप के बहार मुझे कुछ चप्पल दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

टी और एक कार दिखाई दे रही है स्कूटी का कलर ग्रीन और कार का कलर वाइट है यहाँ पर मुझे शोरूम दिखाई दे रहे है।